और दोनों साइड दुकाने है दुकानों के अंदर लोग है और साइड में बाइक भी रखी हुई है और बे-दोनों बिल-के बिच में सामने एक ब-पोस्टर लगा हुआ ह।

दुकान के बहार एक प्लास्टिक का काफी ऊंचा स्टैन्ड रखा हुआहै ओर यहा पे लाइट का खंभा लगा हुआ है। साइड मे एक बा--

ओर यहा बेठने के लिए चैर भी रखी हई है। कत्थई कलर की और यहा पर एक आदमी भी है। ओर साइड मे कुछ एक बिल्डिंग भी बनी है।